यहाँ पर बहोत सारा शेल्फ भी है जो यह पूरा पूरा लकड़ी से बना हुआ है और इसका अंदर बहुत सा सामान रखा गया है।

यहां पर एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी है जो की वाइट कलर का है।

ये शायद रेस्टोरेंट है इसका वॉल ब्राउन कलर का है।

और यहां पर लाइट्स भी है जो जल रहा है यहां पे बहुत सारा टेबल और चेयर भी हैं।

मुझे यहां पे एक क्रिसमस ट्री भी दिख रहा है जिसे सजाया गया है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सुंदर सा नजारा दिख रहा है और मुझे यहां पर बहोत बड़ा सा बिल्डिंग भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत सुंदर सा रूम दिखाई दे रहा है जोकि वाइट कलर का है।

और यहां पे मुझे कुछ चेयर्स भी दिख रहे हैं जो की वाइट कलर का है उसके नीचे टायर्स लगे हुए हैं यहां पे खिड़की और डोर भी है जो कि पूरे का पूरा शीशा से बना हुआ है।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

यहां पर बहुत सारे स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है मुझे दूर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी दिख रहे हैं।

ऐसे ही एक दुकान है जहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का सेलिंग हो रहा है।

मुझे यहां पर बहुत सारा समान दिख रहा है जैसे की फ्रिज वाशिंग मशीन और यहां पर बहुत सारे बॉक्सेस भी हैं जो हो अलग अलग कलर के है।

यहां पर मुझे लाइट्स भी दिख रहा है जो कि जल रहा है एक पंखा भी है जो की ब्लैक कलर का है।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

मुझे इस तस्वीर में बहुत सुंदर सुंदर नजारा दिख रहा है दूर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो की ब्लू कलर के हैं।

यहां पे बहोत सारे लाइट्स है जो कि जल रहा है।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

मुझे यहां पे एक पंखा दिख रहा है जो की ब्लैक कलर का है यहां पर बहुत सारे मिरर्स भी है।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

यहां मुझे मेट भी दिखाई दे रहा है जो की पिंक कलर का है।

उन लोगों ने अलग अलग कपड़े पहन रखे है कुछ ने कुर्ते तो कुछ नहीं हॉफ टी शर्ट पहन रखा है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जिसको वो व्हाइट कलर का है और शायद से ये एक दुकान है जिसमें बहोत सारा सामान का सेलिंग हो रहा है।

जैसे कि अलमारी वाशिंग मशीन यह सब का सेलिंग हो रहा है मुझे अब कार्टूंस भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर मुझे विंडोज भी दिख रहे है जोकि पूरा का पूरा सीसा से बना हुआ है।

इसका वॉल व्हाइट कलर का है यहां पर लाइट्स भी है जो कि जल रहा है।

जोकि पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ है और उसका कलर भी थोड़ा सा हट गया है।

मुझे यहां पे एक पंखा भी दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर का है।

यहां का खिड़की और दरवाजा भी पूरा का पूरा शीशा से बना हुआ है।

और यहां पर एक फ्लावर पॉट भी है ब्राउन कलर का है और उसके ऑरेंज कलर का फूल उगा हुआ है।

जो की ग्रीन कलर का है पर यहां पर बहुत सारा वायर्स भी है।

है जो कि ब्लू कलर का है और उसका ऊपर सेकंड क्लास और बहोत कुछ लिखा गया है।

यहां पर बहुत सारा स्विच भी है मुझे यहां पर बहुत सारा फ्लावर पॉट्स भी दिख रहा है जो कि अलग अलग कलर का--

यहां पर मुझे टेबल भी दिख रहा है जोकि ब्लैक कलर का है।

मुझे यहां पर बहुत सारा चेयर्स भी दिख रहा है जोकि पूरा पूरा लकड़ी से बना हुआ है।